एक हैंडपंप है और हैंड पंप के इस रोड में काफी सारा पानी भरा हुआ है। एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है।

उसमें उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लकड़ी दिखाई दे रही है। बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र का पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है और लहरे दिखाई --

एक रोड है रोड खुदी हुई है और हरी दिखाई दे रही है।